यहाँ पे मुझे पीछे कुछ उम-कार्यालय टाइप दिख रहा है और वो वहा ग्राउंड दिख रहा है मुझे और कुछ पेड़ दिख रहे है यहाँ पे बड़े-बड़े।

यहाँ पे एक लॉन्ड्री है जिसमे लॉन्ड्री लैब है लिखा है वी केयर योर फैब्रिक और सर्विस होटल लॉन्ड्री गेस्ट लॉन्ड्री हॉस्पिटल लॉन्ड्री यहाँ पे कॉल करने के लिए नंबर दिया है।

मुझे एक खिड़की दिखाई दे रही है जो कि बोहत बड़ी खिड़की है और एक चादर दिखाई दे रही है नीले कलर का और ब्लैंकेट कलर अलग है थोड़ा --